चिप्स कुरकुरे वगेरा यहाँ पे टंगे हुए नज़र आ रहे है और यहाँ पे सामने एक --

जैसे की अपन देख पा रहे है यह एक अ रेस्टोरेंट --